हैंगर दिखाई दे रहे हैं हैंगर में लगे हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

लोहे का बना हुआ घर दिखाइ दे लोहे से बना हुआ सरिया दिखाई दे रहा है।

ऑटो दिखाई दे रहा है एक आदमी दातुन करते हुए दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे खाली सी जमीन दिखाई दे रही है उसपे छोटे छोटे से घास दिखाई दे रहे हैं।

रेड कलर का बना हुआ गेट दिखाई दे रहा है बहुत से लोग दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है मार्केट टाइप का दिखाई दे रहा है।